चार प्लेयर दिखाई दे रहे है सबके हाथ में टेनिस का टेनिस है और एक टेनिस नेट भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का मेट पर ये लोग खेल रहे है।